है एक बहोत सी बिल्डिंग नजर आ रही हैं। के पास में घर भी नजर आ रहा हैं। आस-पास व्यक्ति भी नजर --

है एक बहोत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है। आस-पास बहोत से घर भी नजर आ रहे हैं। पेड़-पौधे लगे हैं।